जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं जैसे कि मैं देख पा रहे हूं।

यहां पर एक फिसल पट्टी है जिसमें बच्चे फिसल रहे हैं जिसमें से एक लड़का आं फिसल --

जैसे कि मै देख पा रही हूँ यह एक सुबह का समय है जैसे कि मै देख पा रही हू सामने में एक दुकान है।

पा रही हूं अंदर में एक आदमी बैठा हुआ है जो किताब बेच रहा है और यहां पे तरह-तरह की काॅफी-किताबे रखी गई है।

जैसे कि मैं देख पा रही हू यह एक साम का समय है जैसे कि मैं देख पा रही हू सामने में एक दुकान है दुकान के ऊपर एक पोस्टर है।

सामने में एक पोस्टर रखी है और पोस्टर मे कुछ लिखा हुआ है जैसा की मैं देख पा रही हूँ सामने में एक औरत है --

यहां पर एक बैड है जिसके बैड सीट का रंग सफेद और बैंगनी रंग का है जैसे कि मैं देख पा रही हूं ।

दोनों साइड में बोर्ड लगी हुई हैं जिसका रंग लाल रंग का है और एक बोर्ड में लिखा है प्रभु की प्रर्थना --

दूसरे बोर्ड में उसी को इंगलिश में लिखा गया है लोर्डस प्रेयर जैसे के मैं देख पा रही हूं यहां पर नीचे घेरा लगा है।

यहां पर रैक बनी हुई है और रैक में तरह तरह की कॉपी किताब रखी हुई है जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने में एक टेबल है टेबल के ऊपर एक --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

ये पूरा घर का रंग पीला रंग का है जैसा की मैं देख पा रही हूँ सामने में एक पोस्टर लगी है जिस में लिखा है महावीर गेस्ट हाउस --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक दुकान है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस दुकान में बहोत सारे--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

जैसा कि‍ मैं देख पा रही हूँ यह एक सुबह का समय है जैसा के मैं देख पा रही हूँ यह एक डैम है।

दूर में बहुत सारा घर बना हुआ है जैसे कि‍ मैं देख पा रही हूं यहां पर टावर है जिसमें तार लगी है।

सब और बहुत सारी चीजें है जैसे की मैं देख पा रही हूँ औ --

रही हु। सामने में एक चेयर रखी है जिसका रंग कथा रंग का है जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ सामने में एक टेबल रखी हुई है टेबल के ऊपर मार्वल --

पथर रंग का है जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर चार पाँच चेयर है जिसका रंग --

जिसका रंग हल्का सा हरा और पीला रंग का है।

जैसे कि में देख पा रही हूँ यह एक शाम का समय है जैसे कि में देख पा रही हूँ इसमें सूरज डुब रहा है जैसे कि में देख पा रही हूँ।

नीचे में सतरंज बिछाया गया है जिसका रंग लाल और काला रंग का है जैसा कि मैं देख पा रही यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं --